देखिए यहां पर हमे एक एयरोप्लेन दिखाई दे रही है बहुत ही बड़ी जिसमे बहुत सुंदर ब्लू और व्हाइट कलर का कलर दिख रहा है पंखे दिखाई दे रहे है।

हमे यहाँ पर एक साइकिल वाला भी दिखाई दे रहा है वो साइकिल मे कुछ लेकर जा रहा है वो निचे खड़ा हुआ है हमे यहाँ पर रोड़ भी दिखाई दे रही है हमें बहुत दूर में घर और पेड़ भी दिखाई दे रहे यहाँ पर हमे बहुत सारा पानी भी दिखाई दे रहा हैं।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

मुझे यहा पर बलफ भी दिखाई दे रहे है मुझे नीचे सीलिंग भी दिखाई दे रही है मुझे यहा पे बहुत सारे लड़के भी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाॅं पर और कुछ हमें हुई कार्पेट भी दिखाई दे रहा है हमें यहाॅं पर बहुत बड़ा बोर्ड भी दिखाई दे रहा है हमें यहाॅं व्हाइट कलर का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है हमें तिरंगा झंडा भी यहॉं पर दिखाई दे रहा है।

और हमें बहुत सारी लेडीज़ नजर आ रही है यहां पर हवन कुंड भी नजर आ रहा है यहां पर हमें बहुत सारे बच्चे और लेडीज़ नजर आ रही है हमें राइट में बहुत सारे यहां पर राइट साइड में यहां पर पेड़ भी नजर आ रहे है हमें हमे यहां पर बहुत सारी लेडीज भी नजर आ रही है।

हमे खिड़की भी दिखाई दे रही है यहाँ पर हमे रेत और पेड़ भी दिखाई दे रहे है नीचे हमे फर्श भी दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमे कुछ लड़कियाँ भी दिखाई दे रही है।

देखिए यहा पर आपके सामने एक नाव दिखाई दे रही है हरे हरे कपड़े दिखाई दे रहे हे एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दे रहा हे यहा पर आसमान भी दिखाई दे रहा है